आई डोंट नो क्या है और कुछ लिखा वा भी नजर नहीं आ रहा है। घांस भी है आस् --

ऑ ये कोई बौद्ध धर्म क्या कुछ मुझे मंदिर वगैरह होगा शायद --

नीचे काफी सारा पानी है जो बोहोत अच्छा लग रहा है। ये टावर मुझे कुछ

आ ये तो मुझे कोई चर्च लग रहा है और ये जो सभी हैं वो प्रीस्ट्स हैं।

एंड ये जो है आस-पास हरियाली है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है जो --